इसमें फुल पूरा सजावट हुआ है।

सारे बाइक है जैसे जिक्सर है।

इसमें कार्यालय प्रासनिक भवन पुस्तकालय दिखाई दे रहे हैं गीत दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें मोबाइल दिखाई दे रहा है जो खींच रहे हैं आदमी वीडियो बनाई दे रहा है।

और इसमें पत्ता दिखाई दे रहे हैं श सादा रंग का स्कूटी है।

और बोतल लगा हुआ है एक आदमी है जो बाल कटा हुआ है डिजाइन कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें खेर सब है जिसमें हम लोग जाएंगे ई रास्ते से घूमने।